हिंदी इंग्लिश मैथ यहां पे रेजर भी है।

यह चित्र किसी विद्यालय का है जहां पर बच्चे खो खेल रहे हैं।

इस चित्र में वाइट कलर हुआ है इस चित्र में गेटों का कलर काला है।

इस सब्जी का कलर पीला है यह बहुत स्वादिष्ट है।

इस चित्र में कुर्सियाँ भी रखी हैं इस चित्र में लाइटें भी लगी हैं।

यह छठी पूजन का चित्र है यहां पीछे एक नदी है।

इन सभी औरतों ने साड़ी पहनी है और पीछे बहुत से पेड़ हैं।

इसमें कुछ लेंटेन भी लटक रही हैं।

यह चित्र किसी कूलर की दुकान का है जहां बहुत से कूलर रखे है।

कुछ कूलरों की क्वालिटी बड़ी और कुछ की छोटी है।

यहां पर बहुत सी बाइके खड़ी है यहां पर एक टेंपो भी खड़ा है।

इस चित्र में कपड़े भी हैं यह किसी कॉस्मेटिक की दुकान है।

इस चित्र में भी है।

इस चित्र में बहुत से नाव है इस चित्र में बहुत से व्यक्ति हैं।

इस चित्र में नाव का कलर पीला रेड है।

यहां पे बाईकें भी खड़ी है और यह जगह बहुत सुंदर है।

बोर्ड का कलर बैंगनी है इस चित्र में पेड़ की पत्तियां अंदर आ रही है।

इस चित्र में एक चेयर रखी है।

इस चित्र में चेयर के ऊपर एक साफा है।

इस चित्र में सामने बल्ब टंग रहे हैं ये इस चित्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान है।

इस चित्र में बहुत से व्यक्ति हैं जो बकरियों को देख रहे हैं।

यह चित्र किसी परचून की दुकान का है।

यह चित्र में बहुत से व्यक्ति बैठे हैं।

ऊपर फूलों की माला से सजाया है।

पीछे एक व्यक्ति सेल्यूट कर रहा है यह चित्र बहुत सुंदर है।

यह चित्र किसी समुद्र का है जहां पर एक पानी का एक जहाज जा रहा है।

इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं जो पिज़्ज़ा का आनंद ले रहे हैं।

इस चित्र में बहुत से कमरे हैं। इस चित्र में पंखे चल रहे हैं।

इस चित्र में एक गमला है इस गमले पे डिजाइन उतरे हैं।

इस गमले का कलर क्रीम है इस व्यक्ति ने चश्मा लगाया है।

इस चित्र के बराबर में लाइट लगी है।

इस चित्र में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत से बोर्ड लगे हैं जोकि बहुत सुंदर है।

इस चित्र में लाइट भी लगी है इस चित्र में व्हाइट कलर हुआ है।

इस चित्र में बहुत सी लाइटें लगी हैं। इस चित्र में बहुत सी पेंचकस पिलास हैं।

यह कोई मेडिकल दुकान है जिसका नाम आस्था है।

यहां पे बहुत सी बाइकें खड़ी हैं। यहां पे एक पेड़ है।

जहां पर कुछ व्यक्ति खड़े है यहां पर बहुत सी बाईकें है।